पार्क है पार्क का बड़ा सारा गेट है जो गेट फिलाह बंद है इस पार्क की--

चार दुवारी हो रही है पार्क के अंदर बड़े -बड़े पेड़ है और घास--

सामान मिल जाता है यहाँ पर हमारे सामने अलग -अलग वेराइटी के सामान अलग -अलग डिस्काउंट में मिलते है।

सुपर मार्केट बनी हुई है वहाँ पर एक फ्रेश नाम की दुकान में सब्जियों की--

फिलाल कोई रहता है यह पुरानी हो चुकी है काई काली काली दिवाल है।

रैक लगा रखी है रैक यानी अलमारी के अंदर अलग -अलग तरह के किताबें हैं।

यह एक पारक का एरिया है पारक में --

एक चोर आया है चोर आया है के बिच में जाम लग गया है यहाँ पर अनेक ऑटो है और --